मेज पड़ी हुई है। मेज पे टिशू पेपर रखे हुए हैं ग्लास रखा हुआ है।

बड़े लोगों के कपड़े पहन मिलते हैं लड़कियों के भी कपड़े मिलते हैं।

पेन मिलते हैं। स्टेशनरी की सामान सारी मिलती है और तीन लोग हैं हेलमेट रखा हुआ --

एक आंटी जी बैठी हुई है कुर्सी पर ऊपर सेकंड फ्लोर पर शीशे की गेट बना हुआ है।

शंखनाद कर रहे इसमें बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यह एक फूल माले की दुकान है जो मंदिर के सामने ही होती है।

ये ग्रोसरी की दुकान है जिसका नाम है आराध्या ग्रोसरी स्टोर इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं।

मसीन में मैकेनिकल चीजें टीचर बता रहा है।

एक टीचर देख रहे हैं एक टीचर उसमें बता रहे हैं कि--

एक आदमी सेटेलाइट से कुछ देख रहा है एक एल_इ_डी लगी हुई है बहुत सारी एल_इ_डी लगी हुई है।

एक तुलसी का गमला लगा हुआ है जिसे मंदिर की तरह बनाया गया है।

ये किसी मंदिर की फोटो है जो दोपहर के समय धूप में ली गई है।

यह गैराज है जिसमें सफेद कार खड़ी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है एक टी_वी लगी हुई है।